बहुत ही संकीर्ण होने के कारण यहाँ पे हमेशा भीड़ उमड़ी रहती है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लगाए गए है लेकिन अभी दिन का उजाला है इसलिए ये लाइट अभी बंद है।

पिक्चर में यह दिखाया जा रहा है कि यह माँ सरस्वती की मूर्ति है यानि कि यहाँ माँ सरस्वती की पूजा हो रही है और एक लड़का माँ सरस्वती का पैर छूते हुए फोटो खींचा रहा है।

यह एक हिल स्टेशन नजर आता है और यहाँ बहुत सारे लोग स्किंग कर रहे हैं यहाँ पर सभी लोग बहुत एन्जॉय कर रहे हैं और अपने अपने राफ्ट से स्किंग कर रहे है ।

और यहां बहुत सारे बच्चे इसमें चढ़ कर एन्जॉय करते है लेकिन अभी फ़िलहाल ये ट्रैन रुकी हुई है हो सकता है यहां पर अभी कोई बच्चे ना आये हुए हो।